ये एक फोटोशूट के लिए गए हैं यहां पे एक जंगल में खड़ा है यहां पे बहोत सारे लोग छोटे बड़े बच्चे हैं और एक लड़का--

आज सीट बिछाई गई है और ये वाइट कलर के टाइल्स है अ स्क्वायर शेप में टाइल्स है यहाँ पर बहोत बड़ा सोफा सेट रखे गए है।

यह एक स्विमिंग पूल है और उसमें रस्सी डाली डालते हैं अलग अलग शेल्फ बनाने के लिए अलग अलग रनिंग रेस के लिए इसके आजू बाजू--